एक बोर्ड पर स्टेशन का नाम बोर्ड भी दिखाई दे रही है।

एक लड़की पिंक स्वेटर पहने खड़ी है।

साइड में बड़े पेड़ दिख रहे हैं प्रकृति हरा है।

दूसरी तरफ पहारी है जो हरियाली से ढकी हुई है।

कार्टन से सीटिंग एरिया को अलग किया गया है।

बोर्ड पर लिखा है सदर हॉस्पिटल गोपाल गंज।

काफी सारे बाइक रोड के साइड पार्क है।

आदमी लेक के किनारे खड़ा है हाथ में स्टिक या डंडा पकड़े हुए।

आसमान में बादल है उनका भी रिफ्लेक्शन पानी पे--

ये फ्लोरल डेकोरेशन और रिंगिंग स्टार लगाए गए हैं।

दिए से वॉर्म ऑरेंज रौशनी आ रही है।

मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की है जैसे गणेश और लक्ष्मी जी।

कुछ पलास्टिक चेयर्स नीचे रखी है।

अन्य बाइक और स्कूटर के टायर्स निकली स्टेक है।

फुटपाथ पर दो लोग चल रहे हैं एक आदमी और एक औरत।

पार्क से पानी देने का सिस्टम दिखाई दे रहा है।

फुटपाथ का साइड में बना हुआ है।

ये स्टेशन मॉडर्न और वेल मेंटेन लग रहा है।